पार्क बनी हुई है और उसके साथ ही एक झील भी है झील में लोग किश्तियों में--

व्हाइट कलर का मंदिर है और मंदिर के पिछे बहुत सारे घर भी बने हुए हैं और मंदिर के साथ ही एक पुजारी भी बैठा है।

मॉल के बाहर की तस्वीर है जहां पर एक व्यक्ति मॉल के बाहर खड़ा है और--

उसके अंदर कपड़े लगे हुए हैं।

अह व्यक्ति अंदर कपड़े खरीद भी रहे हैं और साथ में ही एक--

वहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जिस रूम में एक बेड लगा हुआ है।

जंगल आजो की लेटर के ऊपर डाल रखा है उसके ऊपर वो एक सीमेंट डाल रहे हैं।

बहोत ही सुंदर ये मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक एल_सी_डी लगी हुई है उसके साथ ही कई सारे जो गुब्बारे लगे हुए हैं और उसके साथ ही एक टेबल पड़ा है।

हा उसपे कुछ लिखा गया है साथ में ही एक--

गमले रखे गए हैं जो की बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं सामने ही --

और साथ में ही बैठने के लिए एक बहोत ही अच्छी जगह बनाई गई है जिसपे की लोग आकर बैठे हुए हैं।

अ घर के बाहर एक गेट है जोकि खुला है उसके साथ ही--

और सामने ही दो तीन व्यक्ति खड़े हैं जो को फ्रिज को खोलकर खड़े हैं और फ्रिज में से कुछ निकाल रहे हैं।

बहोत सी सारी डेकोरेशन की गई है।

और ऊपर ब्रिज बना हुआ है ब्रिज ऊपर से--

उसके साथ मशीनें बड़ी है वो भी जिम की मशीनें हैं।

पार्क के बीच बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ों की छांव के--

यहां पर एक पार्क के बाहर दो साइकल खड़े हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए हैं जहां पर लोग आते हैं।

बढ़िया लग रही है सामने से सूरज की किरणें पड़ रही हैं।

यह एक बहोत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है जहां पर पेड़ पेड़ लगे हुए है।

बोर्ड लगाया गया है। बहोत ही बड़ा यह स्कूल है और उसके बाहर--

कुछ वैंस हैं पीले रंग की बसें भी खड़ी हैं।

यह एक बहुत ही अच्छा व्यू है जिसमें की सड़के दिख रही हैं जोकि एक दाएं को और एक बाएँ को निकल रही है।

यह एक पेट्रोल पंप की तसवीर है जहां पर लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं।

यह एक भारत की तस्वीर है जहां पर एक बहोत ही--